एक स्कूल के क्लासरूम पर बहुत बड़ा ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर --

और पहाड़ से उगता सूरज काफी मनोहर लग रहा है।

टॉप पर रखे हुए हैं और कुछ पेंट्स हेंगर पे लटकाए गए हैं।

एक बहुत बड़ा सा ऑफिस जहाँ पर सहकर्मी बैठा हुआ है।

पानी का टेबल लगा हुआ है जहां पर फ़ोम के प्लेट पर बिरयानी है।

और समुद्र के किनारे चारों तरफ रेत ही रेत मौजूद है।

एक बहौत बड़ी बिल्डिंग है जिसमे बल्ब की बहुत सारी लड़िया सजी हुई हैं।

प्लास्टिक के पन्नियों में नीबू भरी हुई है और हरी धनिया --

जिससे शहर भीगा हुआ है और रास्ते पर बहुत सारी गड़िया और बसे खड़ी हुई है।